इस चित्र में एक बहुत बड़ी सी गार्डन है गार्डन के--

एक्सरसाइज कर रहे हैं और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रही है बिजली की तार दिखाई दे रही है।

और उस तरफ मे दो दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत बड़ा रिसेप्शन पार्टी ।

ऊपर फैन लगा है और दीवाल पर बड़ी सी दर्पण लगी गई है।

फैन लगे ऊपर में खिड़कीयाॅं दरवाजा दिखाई दे रहा है।

बाहर ये चित्र दिखाई दे रही है और अंदर में --

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा बेसमेंट है।

इस तरफ भी बहोत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मिट्टी दिखाई दे रही है बाहर में।

और इस तरफ भी और मेज बिछी हुई है।

चित्र में बहुत बड़ा पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और अगल बगल में पेड़ के पत्ते झड़े हुए हैं चट्टानों के ऊपर--

और भी एक लड़का खड़ा हुआ है।

जिसमें बहोत गोल सा सर्कल सा स्टेडियम बना हुआ है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा--